जैसे कि अगरबत्ती कोलगेट ब्रअ --

और कंप्यूटर में देख रहे हैं।

यह किसी चीज का फैक्ट्री लग रहा है यहां--

यह एक रूम है इस रूम में काफी सामान है जैसे अलमारी शोकास ।

बंबू से घेरा गया है जो काफी अच्छा लग रहा है।

फोटो घीचा गया है यह नदी बहोत ही बड़ी है इसकी लहर भी बहोत तेज से हो रही है।

इसके पीछे दो खिड़कियां भी हैं इसमें दो पंखे और काफी लाइट भी लगी है जो इस रूम को--

यह एक पथरी इलाका है यहां पे काफी पेड़ पौधे हैं यहां पे बहोत सारे आदमी है जो फोटो घिचवा रहे हैं।

यहां पे एक नीले और लाल--